एक पहाड़ी इलाका है बहुत ही खूबसूरत सा पहाड़ दिखाई दे रहा है यहां पर जंगली बहुत सारे पेड़ है ।

एक आदमी खड़ा हुआ है दूसरा आदमी स्टेचर पर लेटा हुआ है आदमी ने ब्लू कलर कि टी-शर्ट पहन रखी है ।

यह एक पार्क है पार्क में कोई भी नजर नहीं आ रहा है ग्रीन कलर की शीट्स पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

उसके ऊपर हरे-हरे केले के पत्तों से सजाया गया है नीचे बहोत सारे लोग नाचते झूमते नज़र आ रहे हैं।

यह एक ई-रिक्सा है ई-रिक्सा बिलकुल नया नज़र आ रहा है रेड कलर का ई-रिक्सा खड़ा हुआ है।

वो घर कि छत बनाते हुए नज़र आ रहे हैं घर में लकड़ी कि बल्लियां भी लगी हुई है।

एक बहुत बड़ा सा होटल है होटल बहुत ही सुन्दर नज़र आ रहा है रिसेप्शनिस्ट पर बहुत सारे फ्लावर रखे हुए है ।

यह एक बाजार जैसी जगह है बहुत बड़ी-सी रोड बनी हुई हैं रोड पर सब आते-जाते नजर आ रहे है एक व्हाइट कलर की सफारी जा रही है।

साइड में बहुत सारे अमरुद रखे हुए है तीन हरे-हरे वाटरमैलोंन रखे है ।

बादल बहोत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है छोटा-सा गुम्बद पीछे बना हुआ है।

यह एक बुक स्टोर है। बुक स्टोर पे बोहोत सारी बुक्स रखी हुई हैं। बोहोत सारे ब्वॉयज खड़े हुई हैं।

यह एक बड़ा सा हॉल है हॉल में बहुत पुराने-पुराने सा सामान रखा हुआ नज़र आ रहा है कुछ पुराने-पुराने से पोस्टर है ।

स्टेज पर एक पोस्टर पर फ्रेशर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक पुस्तकालय है पुस्तकालय के ऊपर येलो कलर की दीवाल पर गाँधी स्मरक पुस्तकालय लिखा हुआ है।